इस फोटो में एक बड़ा सा डेंटल क्लिनिक है और यहां सामने अपार्टमेंट जैसा बना है जो एल्मुनियम और शीशा का गेट से बना है और यहां एलमुनियम का गेट स्लाइडर है।

जो नीला रंग का है और उसमें ड्रावर है बहुत सारा और वहां सामने एक नकली पौधे का गमला छोटा सा रखा हुआ है और वाटर बॉटल भी रखा--

और यहां ईंट का डिजाइन बना है जिसमें लाल रंग है।

बाहर से दिवाल का रंग सफेद है।

दुकानों में बहुत ज्यादा लाइटें जल रही है रात का समय है आसमान पूरा काला रंग का है।

तरबूज है गोभी है केला है और अनानस है जो अनानस भूरा और हरा रंग का।

नीचे बहुत सारे कूड के डब्बे हैं जो भूरे रंग के हैं और यहां पर सामने फ्रिज रखा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हाल है रूम है।

इधर बहोत सारे डिजाइने बनी हुई है दीवाल पर।

और नीचे दो प्लास्टिक के स्टूल है।

सामने एक गोल्डन कलर का गेट जैसा बना है।

और यहां एक आदमी खड़ा हुआ है कार के सामने जो इंजन का बोनट खोल रखा है।

जो की अलग अलग रंगों का है जो भूरा है नीला है ऑरेंज है लाल और काला रंग का है और पर्पल रंग का भी है।

बगल में एक चैन गेट है और उसके बगल में एक सटर है।

यहां बहुत सारी कुर्सियां हैं।

और यहां एक पोल गड़ा हुआ है और ऊपर से तार तार हुआ है।

इस फोटो में काफी बड़ा सा बिल्डिंग है जो हरा रंग का है।

नीचे एक शेड बना हुआ है जो की करकट से बना है।

ग्रील का रेलिंग लगा हुआ है।

फूलों से सजावट किया गया है जो कि सफेद और लाल रंग का है।

दो सफेद और लाल रंग के कपड़े पहने हैं लगभग दो आदमी सफेद रंग के शर्ट पहने हैं और एक गुलाबी रंग का --

जमीन है जहां पर नीचे मिट्टी है और कुछ घासें जमे हुए है।

घासे है सूखी हुई है और कुछ हरी भी है।

बगल वाला बस हरा और उसमें पीला और लाल रंग का पट्टी जैसा कुछ है।

एक लड़की के पीठ पर एक बैग है और एक औरत ने अपने हाथ में झोला टांग रखा है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा तालाब है।

और एक बच्चे ने एक बच्चे को टांग कर रखा है सामने वाले आदमी के सिर पर एक दवरी है।